और पीछे दीवार पर लाल कलर का पोस्टर चिपकाया हुआ है।

सामने में दो आदमी खड़ा है।

बहुत सारे बच्चे कॉपी खोल कर पढ़ रहे हैं।

सामने में एक ट्रैक्टर दिख रहा है।

जिसके बगल में आसमान दिख रहा है।

जिसमें गणेश भगवान की मूर्ती लगी हुई है।

ऑरेंज कलर का लाइट आ रहा है।

जिसमें पलस्तरा नहीं किए हुए हैं।

बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं।

नदी में एक नाव चल रहा है।

नाव लकड़ी का बना हुआ हैं।

सामने में बहुत सारा बाइक दिख रहा है।

नीचे जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

सामने में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और ऊपर छत में दो पंखा लगा हुआ है जोकि वाइट कलर का है।

नीचे एक करेन लगा हुआ है।

और सामने में दीवाल दिखाई दे रहा है।